जमीन दिखाई दे रही है बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है।

बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

एक हरा डब्बा दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे पोस्टर चिपके हुए हैं।

बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं गाड़िए दिखाई दे रही हैं।

टेबल कुर्सी दिखाई दे रही है।

पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

तीन बच्चे खड़े हुए हैं।

नीचे काले कलर की जमीन है।

एक लाल कपड़ा दिखाई दे रहा है।

उसमें बहुत सारी मछलियां रखी हुई हैं।

पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं ।

बहुत सारी मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं आसमान दिखाई दे रहा है अंधेरा है।

टोप नटाउन बेकर्स का एक पोस्टर दिखाई दे रहा है।

उसमें सफेद कलर के फूल रखे हैं।

पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

एक घर दिखाई दे रहा है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

नीचे जमीन पर हरी घास दिखाई दे रही है।

हरी नेट दिखाई दे रही है।

मेस आई कैफे का एक काले कलर का लाइन लगी है।

बहुत सारी खिड़किए दिखाई दे रही हैं।

पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं।

आसमान दिखाई दे रहा है।

दरी बिछी हुई है एक बाल्टी रखी है।